यह एक स्टेज है। यहां पे बहोत सारे बच्चे डांस कर रहे हैं पीछे पंखा है ए_सी है और घड़ी लगी हुई है।

यह एक बस स्टैंड है यहाँ पे बस खड़ी हुई है| बहुत सारे लोग लाइन लगाके टिकट ले रहे हैं और बाइक है| लाइट के खंबे है।

एक बिल्डिंग हैं। बिल्डिंग के बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी हैं। बहोत सारी गाड़िया खड़ी हुई हैं और बिल्डिंग के बाहर एक पोस्टर लगा है। पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है। एक आदमी है वे फोन पे बात कर रहा है।